ब्लैक और रेड कलर के हैं और व्हाइट कलर के हैं।

इसमें अधिक मात्रा में व्यक्ति बैठे हुए हैं ज़िन्होने सफेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

प्रिंटर शॉप है जहां फोटो कॉपी की जाती है।

सामने एक लैपटॉप भी रखा हुआ है और ब्लैक कलर का है।

ऊपर जो डिब्बा रखा हुआ है उसमें ग्रीन और वाइट कलर की है।

नीचे घर बना हुआ है जिसकी छत रेड कलर की है।

मौसम बहोत ही अच्छा लग रहा है यह बहुत सुंदर दृश्य है।

इसकी जो शेप बनाई गई है वो सीमेंट से की गई है।

ये पीतल का और कांच का सामान है यह बहुत ही सुंदर दर से चमक रहा है।

जिसमें सामने जो बैठा हुआ है वह एक व्यक्ति है जिसने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लू कलर की जींस पहनी हुई है।

दो व्यक्ति बैठे हुए हैं उन्होंने रेड कलर की हैट और ड्रेस पहनी हुई है।

ये एक बहुत अच्छा दृश्य है जिसमें मौसम बहुत बढ़िया लग रहा है।

पेड़ खड़े हैं जो की बहुत बढ़िया लग रहे हैं।

और यहां पर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े नजर आ रहे हैं जो कि ग्रीन येलो व्हाइट ब्लैक --